इसमें मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं।

पेड़ दिख रहे हैं इसमें मुझे बैग दिख रहा है।

इसमें मुझे हथौड़ी दिख रही है।

इसमें मुझे पत्थर दिख रहे हैं।

इसमें मुझे बेकरी दिख रही है।

ये मुझे बड़ा मैदान दिख रहा है।

इसमें मुझे पत्थर दिख रहें हैं इसमें मुझ